और साइड से एक बैठने का भी जगह बनाया हुआ है जो कि एक हार्ट के शेप का है राउंडिंग शेप में।

पानी का रंग सफेद है बहोत बड़ा त तलाब है जहां पर उसके लंबाई और चौड़ाई भी बहोत बड़ी है।

सामने में कुछ मिस्त्री और कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ गाड़ियां भी खड़ी है।